यहां पर लाइट्स और फ्लावर लगाए गए हैं। यह मैरिज हॉल में प्रत्येक दिन किसी न किसी की शादी होती है।

जगह बनाई गई है। यह एक मैदान है। यह मैदान के चारों ओर पेड़-पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पर जंगल जैसा है।

एक किला है। यह किला लाल रंग का किला है। यह किला बोहोत लम्बा चौड़ा किला है। यह किला बोहोत पुराना किला है।